यह कार व्हाइट कलर की है।

तथा ऊपर जो छत है उसपे व्हाइट एंड कॉफी कलर की सीट लगी है।

में पंखा लगा है जो की क्रीम कलर का है।

यह एक दुकान है जो की कार्स रिपेयर की लग रही है।

तथा इसमें कुछ छात्राएं दिखाई दे रही है इन्होंने रेड कलर का स्वेटर पहन रखा है।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

तथा कुछ ग्रीन कलर के यहां खंभे भी लगे है।

इस पिक्चर में मुझे एक लड़का दिखाई दे रहा है जिसेने हाथ में वॉच बांध रखी है।

पैंट किसी का स्काईब्ल्यू एंड किसी का व्हाइट ।

इस पिक्चर में मुझे एक स्टैचू दिखाई दे रही है।

कुछ बैडमिंटन भी यहां है और कुछ योगा के कारपेट भी यहां है जिनका कलर रेड ब्ल्यू एंड ग्रीन एंड ब्लैक है।

इसमें बहुत सारी मुझे व्हाइट कलर की कार दिखाई दे रही हैं।

इसमें मुझे बहोत सारे आदमी दिखाई दे रहे हैं।

जो कि ब्लू एंड ब्राईट कलर के है।

यह एक रोड है इस पे दो बच्चे पीछे देख रहे हैं और--

साड़ी वाली महिला के पास एक छोटी सी बच्ची है।

इसमें कुछ कट्टे दिखाई दे रहे हैं जोकि व्हाइट कलर के ब्लू कलर के हन--

ग्रीन घास भी है तथा गार्डेन में येलो कलर का डेकोरेशन से पर्दा लग रहा है।

ये मार्केट का है जिसमें हमें दुकाने दिखाई दे रही है।

इस पिक्चर में मुझे बहोत सारे डंडे दिखाई दे रहे हैं।